पीछे की ओर हरियाली की चित्र हरी बनी हुई है पेड-पौधे लगे हुए है।

ये चित्र मे कई तरह की किताबें एकादित होके रखी हुई हैं और अलमारी मे किताबों का चयन दिया हुआ है यहाँ पे--

तरह-तरह की भिन्न प्रकार की किताबे हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति सामान रख रहा है बेचने का सामान निकाला है सब्जी की दुकाने लगी हुई है ये चित्र एक मंडी का है और लोग यहाँ से सम्मान खरीद रहे है।

इस चित्र मे बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

सारी गाड़ियाँ एक साथ म पार्किंग में लगी हुई हैं।